और ये जमीन पर पानी भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक व्यक्ति ऊपर से देख रहा है तालाब के पीछे मुझे बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।